एक नदी है जिसमे बहुत सारी नाव है नाव काफी बड़ी है उसमे बहुत सारे लोग है जो की अलग-अलग कपड़े पहने हुए है ।

स्टैंड है इसमे तीन बसे खड़ी है कुछ सफ़ेद बस है कुछ कत्थई कलर की बस है उसके साइड में एक दुकान है जो की किराना दुकान है कुछ लोग है जो बस पर चढ़ रहे है और एक औरत वो भी बस पर चढ़ रही हैं।

एक पुल है पुल के ऊपर एक रास्ता बना हुआ है नीचे बहुत बड़ा नदी है जो की काफी चौड़ी है नदी पर एक नाव है नाव पर कुछ लोग बैठे हुए है।

पहाड़ है जो की पत्थर का बना है उसमे कुछ सीढ़िया लगी है जो की काफ़ी छोटी सीढ़ी है चारो तरफ पेड़-पौधे है।

बस में बड़ी-बड़ी खिडकिया लगी है खिडकियों में कांच लगी हुई है बस के सामने घर है जिसमे हरे रंग का पेंट हुआ है बस के सामने एक सडक है जिसमें कुछ बाइक वाले है।

एक आदमी है जिसके गले में एक सफ़ेद कलर का कपड़ा बंधा हुआ है मंदिर के सामने एक सड़क है जो की डामरिंग सड़क है मंदिर के पीछे कुछ पेड़-पौधे है जो की हरे-भरे है और काफी बड़े-बड़े।

मूर्ति है जो की बैठी हुई है| उसके दोनों हाथ आगे की ओर है।

ये एक घर है जिसके सामने एक बरामदा है बरामदे में चारो साइड से लाइट लगी हुई है जिसमे सब रंग बिरंगी लाइट है ।

चारो साइड कुछ पेड़ पौधे है चारो तरफ कुछ पहाड़ बने है जो की सब मैं पेड़ पौधे लगे हुवे है।